इस चित्र में बहोत सारी बसें दिखाई दे रही हैं कुछ यात्री गण इधर उधर घूम रहे हैं शायद यह किसी बस स्टैंड का ही चित्र है।

अ यह अ कॉलेज काफी बड़ा लग रहा है।

आसपास काफी लोग खड़े हैं का काफी किताबें भी रखी गई हैं।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

पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है अ पीछे एक फाउंटेन भी दिखाई दे रहा है।

पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है लोग इस दृश्य का आनंद ले रहे है।

यह एक दुकान का दृश्य है जिसकी अभी अभी अह ओपनिंग की गई है चारों ओर बैलून और रिबन से इसको सजाया गया है दुकान बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।

यह चित्र एक मंदिर का है यह इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है।

जिस अ जिसमें अलग र कई रंगों की रोशनी से जिसको सजाया गया है बाहर फूलों की सजावट की गई है।

एक कूलर दिखाई दे रहा है इस चित्र में सॉरी अ एक रैक है जिसमें अ जरूरत का हर सामान रखा गया है एक चार्जर भी दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक मंदिर का है यह मन इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है।

अअ यह एक अत्यंत सुंदर दृश्य है जिससे पूरा शहर दिखाई दे रहा है और ऊपर खुला आसमान है जिसका रंग नीला है।

इसमें अ दो या तीन फ्लोर दिखाई दे रहे हैं जिसमें बहोत सारी दुकाने दिखाई दे रही हैं।